इटा रखा गया है और देखिये सामने घर बना हुआ है इसपे दीवार का रंग आसमानी रंग से किया गया और नीचे देखिये पट्टी क्रीमी रंग से की गयी है और यहाँ पर देखिये डारा पर रंग बिरंगी कपड़े टांगे गए है।

और हा नीचे देखिये स्लेटी रंग से रंग किया गया है और यहाँ पर देखिये बहुत सारे चित्र बने हुए हैऔर सामने देखिये गणेश जी की चित्र बनी हुयी है और यहाँ पर देखिये --

टोमैटो सॉस रखा गया है और यहाँ पर नीचे देखिये हॉर्लिक्स रखा गया है मैगी रखा गया है और यहाँ पर देखिये बिस्किट रखे गए है और नीचे देखिये--

देखिये इधर छोटी-छोटी घास भी उगी हुए है इधर देखिये मिट्टी जैसा मैदान है और यहाँ पे देखिये अगल-बगल में बहोत सारे घने पेड़ है और आसमान का रंग देखिये सफेद है।

यहाँ पर देख रहे है इधर कुंबद टाइप का बना हुआ है बैठने के लिए और इसमें देखिये छोटे - छोटे इसमें खंबे लगे हुए है।

सामने आप देख रहै है बहोत बड़ी सी लकडी की अलमारी बनायीं गयी है जिसमे देखिये बहोत सारे खाने है उसमे देखिये बहोत सारा सामान रखा गया है जिसमे की देखिये काफी किताब सेल्लो टेप --

और फेविकोल गोंद और इधर देखिये इधर पेन्सिल रबर कटर --

और यहाँ पर देखिये सामने एक आदमी है जिसने मैरून कलर का शर्ट पहना हुआ है।

और ऊपर देखिये बहोत सारे लाइट जल रही है और दीवाल है वो सफेद रंग से की गई है।

और ऊपर देखिए बहोत सारी लाइट जल रही है और अ ग ब पीछे दिवाल है वो सफेद रंग से की गई है।

और यहाँ पर देखिये शटर आधा ही खुला हुआ है और इधर देखिये बगल में ए_टी_एम हैं और यहाँ पर देखिये ऊपर की जो दीवाल है वो हल्की पीले रंग की है और बगल से देखिये --

यहाँ नीले रंग का और यहाँ पर लड़की का एक चित्र बना हुआ है और अगल-बगल दिवाल है वो सफेद रंग का है और ऊपर देखिये बहोत सारी लाइट लगी है।

अअअ नीले रंग का है और यहाँ पर देखिये एक लड़की का चित्र बना हुआ है और अगल-बगल की दीवार है वो सफेद रंग की है और ऊपर देखिये बोहत सारी लाइट लगी है।

और बीच - बीच में देखिये क्रीमी रंग के परदे लगाए गए हैं यहाँ पर देखिये झूमर लगा हुआ है और अगल - बगल देखिये बहुत सारे रंग बिरंगे --

नैरोड्रम्प से की गयी है और यहाँ पर देखिये दिवाली की लाइट --

लोहे का जाली लगा हुआ है जो कि काले रंग का है और यहाँ पर देखिये बगल में मोटर साइकिल एक रखी गई है जो कि काले रंग की है और यहाँ पर देखिये बैनर लगा हुआ है और--

सामने देखिये यहाँ पर मिट्टी का मैदान है और यहाँ पर देखे छोटे-छोटे पौधे लगाए गए है और इधर देखिये छोटे-छोटे घास भी उगे हुए है और यहाँ पर देखिये जो--

और यहाँ पर देखिये आसमान का रंग भी नीला है और सफेद है और यहाँ पर देखिये इधर कुछ सीमेंट का इधर सीढी जैसा बनाया गया है।

ईटे की सीडी बनाई गयी है इधर देखिये कुछ मोटरसायकल खड़ी हुई है जो की काले रंग की हैं और सामने देखिये सफेद रंग का कार खड़ा हुआ है और यहाँ पर देखिये --

सामने आप देख रहे हे हॉल है और यहाँ पर देखे बहोत सारी लाइट लगी हुए है और यहाँ पर एक सामने एक आदमी खड़ा हुए है जिसने मैरून रंग की टीशर्ट पहने हुए है काले रंग का जीन्स पेहना हुए है और

अलमारी रखी गयी है उसमे देखिये उसमें बहोत सारे खाने हैं उसमे देखिये बहोत सारी रंगीबिरंगी बुक रखी गयी है और यहाँ पे देखिये ऊपर लिखा हुआ है।

लकडी की अलमारी बनाई गई है और ऊपर देखिये बोहोत सारी लाइट लगाई गई है और ऊपर की जो दीवार है ओ सफ़ेद रंग से की गई है और अगल बगल की जो दीवार है ओ भी सफ़ेद रंग से की गई है और नीचे देखिये फर्श पर टाइल्स लगी हुई है।

मेज रखे गए हैं और इधर देखिये इधर जो फर्श टाइल्स लगी हुई है।

ऊपर छत पे बहोत सारे लाइटिंग और सीरीज लगी हुई है।

में आप देख रहे है दो मगरमच्छ है और यहाँ पर देखिये इधर मिट्टी जैसा मैदान भी है और इधर देखिये छोटा सा गेट लगा है काले रंग का और यहाँ पे देखिये जो दीवार है वो--

और अगल आसमान का रंग देखिये सफेद है।

ये देखिये सिमेंट का रास्ता बनाया गया और यहाँ पर देख के बहोत सारे गिट्टी बालू और पत्थर और ईटें--

और यहाँ पर देखिये अभी यहाँ पे टीने का शेड लगा हुआ है और यहाँ पे देखिये बगल में इधर गाड़ी और मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और यहाँ पर देखिये बगल में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो कि नीले रंग और बैगनी रंग में है।

ने आप देख रहे है नाई की दुकान है और यहाँ पर देखिये कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पर देखिये--

ने आप देख रहे है बहुत बड़ा सा मैदान है और यहाँ पे देखिये कुछ मिट्टी जैसे मैदान भी है और कुछ हरे- भरे घास उगे हुए है और अगल बगल देखिये बहुत सारे घने जंगल जैसे पेड़ लगाये गए है।

इधर टिने का शेड लगा हुआ है और वहाँ पे देखिये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है और ऊपर देखिये आसमान का रंग देखिये नीला है।

इधर कैमरा स्टैंड खड़ा हुआ है और फर्स्ट भी देखिये टाइल्स लगी हुई है।

ये देखिये यहाँ पर व्यायाम करने की बहुत सारी मशीनें रखी गई है और बीच में देखिये इधर लाल रंग के कॉटन बिछाए गए है और फर्श पे देखिये टाइल्स लगी हुई है और यहाँ पर देखिये कुछ आदमी खड़े है और कुछ बैठे --

सड़क भी दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पर एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर देखिये अगल-बगल से बिजली की तारें जा रही है और अगल-बगल देखिये बहोत सारे घने पेड़ लगाए गए है और यहाँ पे देखिये बीच-बीच में देखिए इधर--

पटरा लगा हुआ है और यहाँ पे देखिये एक बड़ा - बड़ा गिट्टा लगाया गया है और यहाँ पे देखिये छोटे - छोटे पौधे भी उगे हुए हैं और आसमान का रंग देखिये नीला है।

सामने देखिये बोर्ड पर लिखा हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत सरकार का उद्यम--

देखिये सामने बोट पर लिखा हुआ है उप संचालक कृषि एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ऊपर देखिये लाइट लगी हुई है बड़ी सी और यहाँ पर देखिये--

देखिये सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है उप संचालक कृषि एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ऊपर देखिये लाइट लगी हुई है बड़ी सी और यहाँ पर देखिये--

ड्रम रखा हुआ है और यहाँ पर देखिये बहुत सारे कार्टून रखे गये है भूरे रंग के और यहाँ पर देखिये --

और बहुत सारी इधर मछलियां रखी गई हैं और निचे देखिये यहाँ पे आसमानी रंग का इधर देखिये प्लास्टिक बिछाया गया हैं और यहाँ पर देखिये ऊपर लिखा हुआ है एम बी आर फिश सेंटर --

सामने देखिये लकड़ी का इधर बनाया गया है और यहाँ पर देखिये सुनहरे रंग की कुंडी लगाई गई है और उसमें देखी अगरबत्ती रखने वाला इधर--

अ घने जंगल जैसे पेड़ उगे हुए हैं और आसमान का रंग देखिये नीला है और यहाँ पर देखिए कुछ मिट्टी जैसे मैदान भी है।

अ घने जंगल जैसे पेड़ उसपे उगे हुए है और आसमान का रंग देखिये नीला है और यहाँ पर देखिये कुछ मिट्टी जैसे मैदान भी है।

अ घने जंगल जैसे पेड़ उसपे उगे हुए है और आसमान का रंग देखिये नीला है और यहाँ पर देखिये कुछ मिट्टी जैसे मैदान भी है।

सामने आप देख रहे है मैदान है और यहाँ पर देखिये कुछ हरे-भरे घास उगे हुए है और यहाँ पर देखिये छोटे-छोटे पौधे लगाए गए है जिस पे देखिये--

सामने देखिये यहाँ पर कुछ आदमी और औरत खड़े हुए है जिसमें देखिये आदमी ने शर्ट और पैंट पहने हुई है रंग-बिरंगे और औरत ने देखिये सलवार सूट पहने हुए है और यहाँ पर देखिए--